ये एक रूम है यहां पर दो फ्लावर पॉट है।

यहाँ पर पूरी हरियाली घास हैं और हर तरफ पूरा मैदान हैं। पानी हैं थोड़ा बहोत बीच में।

ये एक लकड़ी का घर है जो कि बहुत पुराना है।

ये एक गली है और दरक्त है हरे कलर का और एक घर है जहां पर रेड कलर --

पूरा दरवाजा खिड़की सब कांच लगा हुआ है और ये पूरा जैसा बहोत सारी है घास है हरा और ऑरेंज कलर --

ये घर है जिसके गेट है और गेट का--

कलर ब्लैक है और अंदर जाकर दो तीन है दो कार है जिसमें से एक कार का कार का कलर --

दो दरख़्त है जो बिल्कुल बाजू बाजू में और जो दरख्त है वो बिल्कुल सूख गए है उनकी पूरी झाड़ी है।

और जिस कलर व्हाइट है यहां पर और बहुत सारी चीजें रखी हुई है।

यहां पर पौधे हैं हरे भरे पौधे हैं और बहोत सारी कार हैं।

और एक दो तीन तरफ तो है पानी का कलर नीला है।

ये एक हरी ये एक हरी घांस का रास्ता है और आसपास पूरा हरे कलर --

और यहां पर चार कार खड़ी हुई है दो कार का कलर सफेद है और एक कार का कलर ब्लैक है।

ये एक फूल की दुकान है फूलों में सफेद कलर का फूल है।